यह तस्वीर दिल खुशा गार्डेन की है।

तथा बिल्डिंग में एक ऊपर एक घड़ी भी बनी हुई है।

सड़क पे बहुत सारे दुपहिया और चार पहिया वाहन जा रहे हैं।

इस तस्वीर में कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

उसने गले में माला डाल रखा है।

इस तस्वीर में एक गेट दिख रहा है।

जिसमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

अंदर जाने के लिए सीढ़ियां हैं।

यह तस्वीर एक बेकरी की है।

इस तस्वीर में गौतम बुद्ध और दो मूर्तियां और दिखाई दे रही हैं।

तस्वीर में एक मकान दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर एक बड़े से प्रांगण की है।

इसमें बहुत सारे महिलाएं पुरुष और बच्चे हैं।

नीचे बहुत सारा कूड़ा भी पड़ा हुआ है।

पास में ही एक कमरा है जिसके ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है।

इसकी छत पे सोलर पैनल लगे हुए हैं।

घर के बाहर एक पार्क सा बना हुआ है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाया गया है।

कुर्सियों पर भी बैठे हुए हैं एक व्यक्ति ने सफेद रंग की कैप लगा रखी है।

जहाज के चारों तरफ लोहे की रेलिंग बनी हुई है।

एक लड़का बॉटल पर अपनी दाढ़ी रखे बैठा हुआ है।

कुछ व्यक्ति सी ट पे बैठ गए हैं।